जोकि बोहोत लम्बा टेंट लगा हैं जोकि बोहोत अच्छा दिखाई दे रहा--

एकठन जेसीबी भी है चैन कुप्पी टाईप मे खड़हा उदहा कहा रहा हैं उसमे एक आदमी बैठा हैं जो की चला रहा हैं जो की बहुत अच्छा हैं यहाँ पर लोहे उहए बहुत सारा मढ़ाये हुए हैं।

एक बहोत बड़ा जंगल है ब-ब-बहोत अच्छा है जो की यहाँ पर एक मोटर साइकिल खड़ा है टी_वी_ एस होगा एक बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर--

एक दुकान है फ्रूटी - उरूटी का जोकि बोहोत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर सूजी -उजी चाय -वाए पत्ती रखा हुआ है यहाँ पर इस्प्राइट है पानी की बोतल है जोकि बहोत अच्छा दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ शॉपिंग मॉल है जो कि बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर लेडिस के बहोत सारे कपड़े हैंजो कि इतना अच्छा दिखाई दे रहा है जेन्स के भी है जो की बहुत अच्छा है।